यहाँ पे एक बैंक दिखाई दे रही है बैंक के सामने कुछ गाड़िया दिखाई दे रही है एक गाडी पे एक आदमी बैठ रहा फोर व्हीलर दिख रहा --

पूरा लाइट से सजा हुआ है और कुछ पेड़ पौधे इत्यादि भी दिखाई दे रहे हैं | लोग दिखाई दे रहे हैं एक लेडिज है एक बच्चा भी नजर आ रहा है।

पेन पेपर ग्लू कांची टेप इत्यादि पीछे दीवार दिखाई दे रही है जिस पर खिड़की दिखाई दे रही है बड़ी ओर मैडम दिखाई दे रही है सफेद कपड़े पहने--

पीछे कुछ लेडिज भी बैठी हैं बहुत बड़ा हॉल है। जिसमें लाइट भी लगी हुई है दीवाले लाइट कलर की दिखाई दे रही है। दरवाजे दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक छत दिखाई दे रहा है और छत पे कुछ लोग दिखाई दे रहा है जो कि काम कर रहा है गिट्टी दिखाई दे रही है। सीमेंट ----

लोगो का सर बंधा हुआ है। हाथ में तसले हैं। और पीछे आसमान भी दिखाई दे रहा है। पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। एक घर भी दिखाई दे रहा है। हरे कलर का नजर आ रहा है। उसकी छत भी दिखाई दे रही है।

यहाँ एक लेडीजस दिखाई दे रही है एक जेंट्स दिखाई दे रहा है पीछे एक मूर्ति दिखाई दे रही है जिसपर एक लाइट पड़ रही है मूर्ति बच्चे की बनी हुई है पीछे एक मंडप लगा हुआ है जोकी फूलों से सजा हुआ हक पर्दे लगे हुए हैं।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

टेबल दिखाई दे रही है टेबल पे कुछ टेप पेपर पेंसिल ग्लू कैंची टेप इत्यादि चीज़ें दिखाई दे रही हैं पीछे दीवार दिखाई दे रही है उसपर एक बड़ी सी खिड़की दिखाई दे रही है।

यह एक स्टेज दिखाई दे रहा है कि सीढ़ियां भी दिखाई दे रही हैं काला कपड़ा दिखाई दे रहा है पूरी लड़कियाँ डांस के कपड़े पेहने हुए हैं।